इसमें एक बोहोत ऊची बिल्डिंग दिख रही है जिसका काम चालू है और एक जो --

हिरन दिख रहें हैं उसके सामने बुक्स रखे हुए हैं जिसमें उसके खाने का कुछ सामान है।

फोटो दिख रही है बोहोत सारे लोग खड़े हुए दिख रहे हैं और --

जिसमें उम्म एक लेडीज एक जेंट्स और एक बच्चे का पुतला रखा हुआ है।

यह एक स्टेचू की शॉप है जिसमें अलग-अलग --